और कुछ लोग यहाँ पर गंगा में नहाने के लिए सुबह सुबह आये हुए हैं।

यह रोड का दृश्य है।

तस्वीर में हमें एक ढाबे की फोटो दिखाई दे रही है।

जो कि बोहोत प्यारा सा नजर आ रहा है।

कुर्सियां गली हुई है जोकि बोहोत अच्छी लग रही है।

कुछ लोग मछलियां खरीदने के लिए मछली मार्केट आए हुए हैं।

काले वाइट रंग के हिरण दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी बायो डाइवर्सिटी की फोटो है।

सकूल बहुत बड़ा है। यह बारहवीं क्लास तक का है।

यह एक कॉलेज का फोटो है। इस कॉलेज का नाम एस.वी.एम. योगा एंड हेल्थ साइंस कॉलेज है।